कॉलेज है भाई बहोत अच्छा दिख रहा है दो है जाने का मन कर रहा है।

बाइक खड़ा हैं चार चक्का खड़ा हैं बहुत अच्छा दिख़ रहा हैं।

बहुत अच्छा दिख़ रहा हैं क्या नज़ारा हैं ज़मीन भी हुआ हैं आसमान भी है अच्छा और वहाँ पास बहुत अच्छा दिख़ रहा हैं।

ये ऑफिस है भाई बहुत अच्छा दिख रहा हैं टेबल हैं।

यह बहुत बड़ा किराना दुकान है बुलेट खड़ा है स्कूटी खड़ा है।